इस इमेज़ में हमें भगवानजी कि मुर्तिया दिखाई दे रही हैं।

सब लोगों ने व्हाइट कलर की कैप जैसा पहने हुए है।

यहाँ का माहोल बोहोत ही अच्छा दिखाई दे --

पीछे की साइड पेड़ लगा हुआ है हा --

ठंडई का आनंद ले रहे --

यहाँ आ के रेस्ट कर सकते है थकान मिटा सकते है एन्जॉय ले सकते है।

में ब्राउनी टाइप का कलर दिखाई दे रहा है।

यहाँ से खड़े होक हम व्यू देख सकते हैं। एकदम नेचुरल व्यू दिखाई दे रहा है।

यह इमेज एक स्कूल की है। यहाँ पे बोहोत ही बड़ा एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

और ये शॉप जहाँ खुला है शहर से बहोत दूर दिखाई दे रहा है यहाँ का सीन देख के ऐसा दिख रहा है।

बहोत ही बड़ी बिल्डिंग है सामने की तरफ यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुईकार खड़ी हुई और व्यक्तिये खड़े हुए हैं।

थोड़ा सा पानी भरा हुआ है।

यहाँ पे झंडा फेराया जा रहा है।

यह एक इमेज दिखाई दे रही है। यह इमेज एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की इमेज है। यहाँ पे लिखा हुआहुआ है।

सभी बच्चे अपने पेपर में मगन हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पे --

एकदम बहोत ही सूंदर वॉटरफॉल दिखाई दे रहा है। पानी तो एकदम ग्रीन ग्रीन बहोत ही अच्छे से सजा हुआ है यहाँ।

यह इमेज दिखाई दे रही है एक वाहन की वाहन में डी जे रखे हुए हैं बॉक्स रखे हुए है। बहोत बड़े-बड़े डीजे रखे हुए है साउंड स्पीकर रखे हुए हैं।

यह इमेज हमें स्टेट बैंक का ए.टी.एम. की दिखाई दे रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ए.टी.एम. ।

यह इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे एक बस खड़ी हुई सुनसान दिखाई दे रही एकदम साफ़ मैदान दिखाई दे रही एक ही बस खड़ी हुई है।

उनकी फोटो निकाली जा रही है। सब लोग लाइन से बैठ के फोटो निकाल निकलवा रहे हैं और सामने एक चेयरस में पर्सन बैठ के फोटो निकाल रहे हैं।

थोड़ा सा पिंक कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पर रेड कलर पे लिखा हुआ है मैंरून कलर पे श्री राम दरबार।

इस इमेज में ग्रीन कलर का मैदान दिखाई दे रहा है। ग्रीन इसमें ग्रे ग्रासेस लगा हुआ है ग्रीन कलर का।